चार पांच छे सात महिले महिला है उ वो लोग जमीन में बैठे हुए है यो योग योगी योगासन का--

ऐसे जगह में बनाया गया है।

लड़का है दूल्हे-दूल्हा भी दिख रहा है दुल्हन भी दिख रही है बाकी दूल्हा का चेहरा मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा है।

यहाँ पे स्विंमिंग पूल है।

यहाँ का जो स्विंमिंग पूल का जो पानी है वो बहुत ही सुन्दर दिख रहा है और यहाँ का जो पानी है।

यह कोई विश्राम गृह है।

धुरस-दूर से फोटो लिया गया है यह--

यह गार्डन है और इस गार्डन में--

पौधा भी है और यहाँ एकांत जगह है और इसमें कोई इंसान नहीं दिख रहा है केवल पेड़-पौधा ही दिख रहा है।